और ट्रेन दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे--

रोड है मेन रोड जिसके किनारे एक बड़ी सी रोड बनी हुई है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र में बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग के चारों ओर ग्राउंड हैं।

और दो टेबल लग लगी हुई है बड़ी बड़ी--

इस चित्र में बहोत बड़ा सा गार्डन है जिसमें पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं।

चारों तरफ पूरे जंगल ही जंगल बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहुत बड़ी सी--

बिल्डिंग के चारों ओर पूरे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तरफ भी बड़ी सी ज्वेलर की शोरुम है।

और ये झूले दिखाई दे रही है।